टेबल पर रखा हुआ जो वाइट कलर का केक है और यह दिल का बना हुआ है रेड रेड सा हर तरफ से बहुत अच्छा लग --

दोनों तरफ ए.टी.एम. लिखा हुआ है यहाँ सामने में उम कुछ पोस्टर भी लगा है और शीशे का कुछ है अंदर में।

पानी के अंदर लगा हुआ है यहाँ पे पत्थर पे भी बड़ा-सा पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे।